यह तस्वीर एक सजाए गए रेस्टोरेंट की है।

दीवारों पर तिरंगे रंग के गुब्बारे से सजावट की गई है।

लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे --

यह एक बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है।

एम डॉट एस_सी और बी डॉट एस_सी इलेवन टू ट्वेल्थ है।

यह तस्वीर एक हवाई अड्डे जैसा स्थान दिख रहा है।

यह एक फर्नीचर की दुकान है।

प्रवेश द्वार पर लाल ईंटें के खंबे और नीला फाटक है।

नाव झील में शांत पानी में चल रही है।

कई लोग बाल कटवाने और सेविंग करवाने आए हैं।

इनलोग लाइव जैकेट पहन कर नाव में बैठे हैं।

बीच का रास्ता खाली और सुनसान है।

यह एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य।

सब ने आरामदायक कपड़े पहने हैं और नंगे पैर हैं।

यह तस्वीर एक भीड़भाड़ वाले ऑटो स्टैंड की है।

यह फोटो किसी शादियां पारंपरिक समारोह की लग रही है जहाँ--

यह एक पंडाल में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर है।

यहां भगवान बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है।